जिनमें औरते हैं आदमी हैं और जे जो होल है ये--

यह एक ऑफिस है जिसमें एक टेबल लगा हुआ है एक चेयर लगी हुई है।

जिसमें काफी सारे बीयर्स रखी हुई है और शराब रखी हुई है।